एक लेडिस है। गो एक गाय है। ऊपर भी लोग चढ़ा हुआ --

पंखा एक दो तीन चार पाँच पंखा है| एक दो तीन चार पाँच छे सात ढेर सारा लोग है।

यहां पेन पेन मिलता है बोतल पानी का बोतल है उसके बाद गाला में माला पहना हाथ में पहना है वाओ

वाव कितना अच्छा लग रहा है देखने में नजारा काश हम भी बैठते ये नाव पे कितनाअच्छा लगता वाव सुपर्ब ---

ये लोग भी हैं। एक दो तीन चार पाँच छे सात आठ आदमी हैं। एक उधर है एक इधर है। खिड़की भी है उसके बाद। ये आदमी कितना अच्छा लग रहा है कि --